साइड में जाली लगी हुई है।

और इस स्टैंड के ऊपर कुछ पैंट रखी हुई है।

इस पर रुपए पांच सौ और सात सौ का लिखा हुआ है।

और ऊपर एक बैनर लगा हुआ है।

और नीचे एक स लाल कलर की मैटे बिछी हुई है।

के ऊपर वीटू वीटू लिखा हुआ है।

जिसके अंदर शीशे की अलमारी है।

जो अलग अलग तरह का रखा हुआ है।

नीचे कुछ लाल कलर के बॉक्सेस रखे हुए हैं।

पीछे कुछ अलग अलग कलर के बॉक्स रखे हुए हैं।

कुछ औरत दिख रही है।

कुर्सियो पर सफेद कलर के कपड़े बिछे हुए है।

व नीले कलर की छत दिख रही है।

और पीछे एक सांप की तस्वीर दिख रही है।

जाल के अंदर एक छोटा सा पौधा है।

एक ने सफेद कलर की शर्ट पहनी हुई है।

फोटो में एक टेंट लगा हुआ है।

और ये एक बड़ा सा ग्राउंड है जो पार्क है।

और कुछ आदमी ने सफेद कलर की ड्रेस पेहनी हुई है।

इस फोटो में लकड़ी दिख रही हैं।

उन पर सफेद ल कलर की लाइन खींची हुई हैं।

और पीछे कुछ पेड़ खड़े हुए हैं।

और सामने एक पीले कलर की दीवार है।

और इनके साइडों में कुछ अलग अलग प्रकार की टाइल्स की दीवाल लगी हुई हैं।

फोटो में बैठने के लिए लकड़ी की कुर्सियां बनी हुई हैं।

यहां पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

जिस पर पीले कलर के फूल आ रहे हैं।

इस पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

पीछे छोटे बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और एक केबल से लगी हुई सीढ़ी दिख रही है।

फोटो में एक शादी का मंडप है।

छत के ऊपर कुछ सेलेंसर लगे हुए हैं।

ये स्टील की चेयर पर बैठे हुए हैं।

और छत है छत का कलर काला है।

और पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है।

सामने दीवार पर एक सफेद कलर की ए_सी है।

एक यहां पर तौलने का तराजू भी लगा हुआ है।

नीचे कुछ लोहे का स्टैंड बने हुए हैं।

सामने बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं।

और इसमें ना कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

और यहां पर लाल लाल कलर की और हरे कलर की लाइट जल रही है।